यहां पर सामने एक रेस्टोरेंट दिख रहा है और सामने कुछ--

बेह रहा हैं और कुछ पानी की चट्टान भी दिख रही हैं सामने कुछ पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं और बहुत अच्छा दिख रहा हैं।

गमला रखा हुआ है सामने दीवाल है।

और एक आदमी यहां पर जिम कर रहा है।

जो मछलियों को दाना देने के लिए रखे हुए हैं।

यहाँ पर एक सामने एक दुकान दिख रही है।

दिख रहा है और कुछ आसमान में बादल भी दिख--

पिंक कलर की कपड़े पेन रखे है।

उसपे नीले पीले कलर से कुछ लिखा हुआ है।

और सामने पौधे हरे पत्तियां--

है और सामने कुछ बाइक्स भी दिख रही है।

सामने कुछ डाली गेट का घर बना हुआ है।

यहां पर सामने एक गाड़ी खड़ी हुई है।

कपड़े खरीद रहे हैं। कपड़ों का कलर --

बॉक्स रखे हुए हैं और कुछ खंभे हैं।

यहां पर बहोत सारे हरे हरे पेड़ पौधे--

और बोहोत सारा अच्छा नजारा दिख रहा है।

ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं।

माता और एक बाबूजी बैठे हुए हैं।

और एक आदमी साइड में खड़ा हुआ है।

नदी में बहुत सारी नाव भी--

बहोत सारे फ्रिज भी रखे हुए हैं।

स्टील की रेलिंग लगी हुई है।

अच्छी हुई है जिसको एक आदमी धो रहा है।

नीले कलर की टंकी भी दिख रही है।

यहां पर एक सैलून बना हुआ है।

लगी हुई है और सामने एक बहुत बड़ी प्रिंट बना हुआ है।